रेड कलर की और वाइट कलर की मालाये लग रही है दो मालाये है और पिक कलर की फूल है इधर जाली वाला गेट है और रेड कलर का मेट है।

यहाँ पे भारी कैंची रखी हुई है। एक ब्लैक कलर का पेन है और एक पंखा लग रहा है।

एक रेड कलर का भी स्टूल है। यहाँ पे पॉलिथीन पड़ी हुई है। पीछे दो लाइट --

मतलब की हलवाई की शॉप है। एक एक कुली किलो की मिठाई रखी हुई हैं यहाँ पे बोहोत टेस्टी वाली।

एक काउन्टर पे कैंची रखी है चाकू रखा है एक प्लेट रखी है |